यहां काफी बड़े बड़े पेड़ और छोटे छोटे पौधे भी हैं।

यहां पे काफी सारी लाइटें जल रही है।

यहां बहुत सारे बेंचेस बिछाए हुए है।

यहां पे बड़ा बड़ा गमले वाली स्टैचू बनी हुई है।

यहां कुछ बलूंस भी लगे हुए हैं तथा यहां पर काफी सारी लाइट्से जल रही है।

यहां सरसों तेल का डब्बा भी रखा हुआ है।

यहां लालपुर लिखा हुआ है तथा यहां पर भारतीय डाक भी लिखा हुआ है।

यहां पे विकेट गड़ी हुई है।

यहां पे बैट भी है।

यहां कुछ मोटरसाइकिल खड़ी की गई है।

यहां पर खंभे भी गड़े हुए है।

यहां फोटो फ्रेम भी लगे हुए हैं।

यहां पर काफी सारे लोग नजर आ रहे हैं जिनमें से कुछ महिलाएं तथा पुरुष हैं।

यहां पर हरा तथा लाल रंग की कारपेट बढ़ा हुआ है।

यहां पे तार भी दिखाई दे रही है।

यहां पे फ्रिज भी है।

यहां एक आदमी चश्मा पहना हुआ है।

यहां लाइटे जलती हुई नजर आ रही है।

इस तस्वीर में काफी सारी पिलर बनी हुई है।

यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए है यहां कॉपी तथा पेन भी हैं।

यहां ट्यूबलाइट्स जल रहे हैं।

यह तस्वीर दूध फैक्ट्री की है यहां पे काफी बड़े बड़े पेड़ और छोटे पौधे हैं।

यहां एक प्लास्टिक का बाल्टी तथा दूसरा लोहे का बल्टी भी रखा हुआ है।

यहां पे लोहे के खंभे भी गड़े हुए हैं।

यहां पे वॉशरूम भी बने हुए हैं।

यहां पे सात सौ पंद्रह लिखा हुआ है।

यहां पे पंखा भी लगा हुआ है तथा यहां बैलून्स भी टंगे हुए हैं।

यहां पे कुछ लाइट से भी लगी हुई है।